जिस कपबोर्ड की ओर डेकोरेट किया हुआ है साइड में बुक्स लगी हुई है।

एक प्रिंटर रखा हुआ है और अलग अलग तरह की प्रिंटरे है अलग अलग तरह की कंपनी है।

और एक रूम बना हुआ है जिसमें टेबल्स लगे हुए हैं और उसका जो दरवाजा है वो शीशे का लगा हुआ और हैण्ड --

और नीला आसमान है और उसके आस पास काफी सारे पेड़ पौधे हैं एक गेट लगा हुआ एक पिलर है जिसका कलर ब्लू और येलो कल में है।

इस तस्वीर में एक छत पर सोलर पैनल लगा हुआ है उसपे काफी सारे शील्डे लगी--

और निवास बन है और जो चल रहा हैं उसको किया हुआ कवर --

अह जिसका कलर रेड और व्हाइट कलर में है उसके पास काफी सारे पेड़ पौधे हैं और छोटे छोटे पेड़ लगाए हुए हैं।